यह बिल्डिंग है यह बिल्डिंग काफी बड़ा है इस बिल्डिंग में बहुत सारे कमरे होंगे एवं बहुत सारी खिड़कियाँ हैं।

एवं बहुत सारे आदमी भी बैठे हुए हैं।

यह माचिस के बाहर बहुत ही --

यह सै यह सैलून में बहुत सारे नाई भी हैं।

कुछ आदमी जिम करते हुए नजर आ रहे हैं।

यह ग्राउंड में बैठने की भी जगह है यहाँ पर बहुत ही बड़ा का पेड़ दिखाई दे रहा --

इस जगह पर बहुत बड़े-बड़े पत्थर है। एवम बहुत बड़े-बड़े पेड़-पोधे है।